और बहुत सारी डिजाइन के नल भी दिख रहे हैं।

इससे बहोत सारे गुलदस्ते की के दुकान में हैं।

और बहुत सारे जेंट्स भी दिख रहे हैं इसमें जिम करते हुए।

और बहोत सारे छोटे बच्चे हैं जेंट्स भी है लेडिस भी है।

और इसमें मारे बहोत कुछ लिखे हुए है और बड़ा सा ग्रील का वो गेट लगा हुआ है उसमें तीन कुर्सी लगे हुए है दो जेंस है।

और इसमें दो पटरी दिख रही है लाइन पटरी जो ट्रेन की पटरी है और इसमें पोल भी है बहोत सारे वायर घिचे हुए हैं।